यहां एक दुकान का दृश्य दिखाया गया है जहां पे तीन लड़के अलग एक हरा एक आसमानी एक ब्लू कलर का टी_शर्ट पहन रखा है।

और पीछे अ एक वाइट क्रीम कलर का दिवार अ रंग रंगा हुआ है और बगल मे पर्दा भी है।

पीछे जो अह वो घर है वो व्हाइट कलर और रेड कलर में रंगा हुआ है।

और यहा पे अ विभिन्न प्रकार के झंडे के तिरंगे लगे हुए हैं।

और इसके आगे दो तबले से घर है और एक ये ऑरेंज कलर का ढाबा है।

यहां पे एक मोबाइल शॉप का दृश्य दिखाया गया है।

उसके आगे एक वेलकम लिखा हुआ है और लिखी हुई है।

और इनका मुंह लाल कलर का है आंख लाल है काला है।

जहां पे एक आदमी खड़ा है और वो पिंक कलर और ब्लू कलर के कपड़ा पहन रखा है और एक हाथ में घड़ी भी है।

और नीचे एक व्हाइट कलर का फर्श लगा हुआ है ये रूम का कलर पिंक कलर का है।

विशाल टावर खड़ा है। इसके अगल बगल घर भी है जोकि व्हाइट कलर के है।

यहां पे गाड़ियां है जोकि सफाईस हो रही है।

यहां पे दो केक का दृश्य दिखाया गया है एक पीले कलर का है।